गर्ल्स एण्ड बॉय्ज़ खड़े हुए हैं डांस की पोजिशन में।

टैक्सी है चल रही है। एक बाइक दिख री है।

बाहर पेनों के पैकेट टंगे हुए हैं।

फेन लगे हुए हैं खिड़कियां बनी हैं उन पर पर्दे लगे हैं।

लड़का खड़ा हुआ है व्हाइट शर्ट ब्लू जींस पेहन के। बैग है लगाया पीछे।

एण्ड एक जो व्हाइट कार है। वो बीच मे रखी है। एक एक्टिवा रखी हुई है।

सड़क है। एक लेडीज खड़ी हुई है।